दो बड़ा-बड़ा खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं कुछ पिलर दिखाई दे रहें हैं कुछ फ्लावर पोट दिखाई दे रहें हैं।

यह एक चित्र है चित्र मे बडी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ डब्बा दिखाई दे रहा है।